यहाँ पे एक कटिंग वाली शॉप है। जहाँ पे मैन सैलून जिसमें कि कोई कटिंग वाले भईया कटिंग कर रहे हैं।

लाइटे लगी हैं पखा लगी हैं चर्च जैसा माहौल है।

छोटे-छोटे लड़कियों के कपड़े भी हैं। लड़कों के कपड़े भी हैं और यह --

आस-पास लगी हुई हैं सुनसान हैं कोई भी नही हैं आस-पास के एरिये में --

हुई हैं। काले रंग की और कोई एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे --

यह कोई नदी है। यह कोई तीर्थ स्थान या नदी है जहाँ --